इतना सारा फूल के बड़का बड़का लड़ी बिल्कुल ही ढेर लगाकर सफेद औरी सब कलर में रखा गयल है।

सेंटर है जिसका हमें बाहर बोर्ड लगा हुआ है तो यह--